यह गेट खुला हुआ है। ये लोहे का गेट है।

हुआ नहीं है ये पूरा नहीं हुआ है यह एक गेट का दृस्य है यह एक लोहे का गेट है ।

ऐसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीटुए है।

के बाहर एक दीवार है जो की यह पोस्ट ऑफिस की दीवार है।

यह तस्वीर हमारे सामने एक मंदिर की ।